खुला खुला शरीर होता है पूरा अच्छा लगता है सुबह में एक्साइज करना यार। मैं तो डेली करता हूँ एक्साइज अच्छा --

डेली चार दूर जाना नहीं पड़ता यार अच्छी दुकान है हर चीज मिल जाती है खाने पीने की बच्चों से बड़े तो --

यार पहाड़ों के बीच में झन्ना कितना अच्छा लग रहा है यार मुझे झन्ने में बनाना और अच्छा लगता है यार।